एक पैदल आदमी जा रहा है वो दिखाई दे रहा है सामाने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहुत सारे खंभे और तार दिखाई दे रहे है और पेड दिखाई दे रहे है।

इस इमेज मे मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है। रोड पर बहुत सारे ऑटो खड़े हुवे दिखाई दे रहे है। मोटर साइकिल दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे मुझे चट्टानें सी दिखाई दे रही है हरा - हरा पेड़ दिखाई दे रहा है और झरना दिखाई दे रहा है पानी का पानी भरा हुआ है।

और ये बहोत बड़ा पत्थर रखा हुआ दिखाई दे रहा है और छोटे छोटे पत्थर भी डले हुए ये दिखाई दे रहे --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

इमेज मे मुझे एक टेबल पे एक कुत्ता सोते हुए दिखाई दे रहा है जो हरे -हरे उसमे कपड़ा लगा हुआ है दो डॉक्टर दिखाई दे रहे है जो कुत्ते का इलाज कर रहे है और इन्जेक्शन दिखाई दे रहे है।

इस इमेज मे मुझे एक ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है ग्राउन्ड मे दो तीन बिल्डिंग दिखाई दे रही है बड़ी- बड़ी सफेद कलर की और एक हमम जाली लगी हुई है उसमे पेड लगे हुवे दिखाई दे रहे है।